सामने में जो लड़का खड़ा है उसके हाथ में पेपर है और नीचे काला रंग का बैग रखा हुआ है।

यह फोटो में तीन अलग- अलग कलर का कुर्ता है दो लंबा कुर्ता है और एक छोटा कुर्ता है।

बगल में एक ऑटो खड़ा है और अगल बगल दो तीन काला रंग का बाइक भी है।

सामने में एक दुकान है जो बंद किया हुआ है।

सफेद रंग का ऊपर में सीलिंग है दुकान के सामने काला रंग का साइकिल भी है।

उसके पीछे बहुत सारा पेड़ है पेड़ में हरा हरा पत्ता भी है।

यह फोटो रात के समय में एक मंदिर को दर्शा रहा है।

बाराती लोग गमछा ओढ़ के खड़े है स्वेटर पहन के सब का मुंह ब्लर कर दिया गया है लाइटिंग वगैरह भी है।

और नीचे पंडित जी बैठके पूजा कर रहे हैं।

यह फोटो एक खाली कमरा का है।

नीचे बहुत सारा अलग अलग रंग का चटाई बिछा हुआ है।

वो फोटो में बहुत सारा शो पीस दिखाई दे रहा है।

अगल बगल कोई इंसान नहीं है।

यह एक प्ले स्कूल का रूम प्रतीत हो रहा है।

यह फोटो मार्केट का है पहला वाला जो दुकान है वह मछली बेच रहा है सामने बहुत सारी मछली है।

एक दुकानदार है वो बैठा हुआ है सफेद शर्ट पहन के उसके हाथ में--

ट्रांसपेरेंट कलर का पाइप है और उसका मुंह ब्लर कर दिया गया है।

रंग बिरंगा सामान सब रखा हुआ है।